कुर्सी के ऊपर बैठ रखे है जो की कुर्सी काले रंग की है तथा अगल बगल लकड़ो से काफी --

उसके ऊपर भी पोस्टर और फोटो वें लग रखी है मकान के आगे सीढ़ी और दौर भी नज़र आ रहा है मकान पीले कलर का है।

तथा सामने भी एक गेट है उ उस गेट के सामने ए एक दीवार है दीवार पे एक फोटो टंगी हुई है।

चारों कार के पीछे एक भवन भी दिखाई दे रहा तथा बड़े-बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे --

तथा अगल-बगल काफी सारी साइकिलें दिख रखी है रंग-बिरंगी --

हॉल ऐसा है जिसके छह पिलर है सफ़ेद और छोड़े से --

पेड़ के आगे बोर्ड बोर्ड के नीचे दुकान कई दिखाई दे रही है।

और एक बच्ची नज़र आ रही है जो की पीले रंग का टी-शर्ट पेहन रखी है।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

तथा चारों वर ग्राउंड वर हरियाली दिख रही हैं।

तारों से भरा खम्भें के ऊपर जाल दिखाई दे रहे है।

तथा एक व्यक्ति सामने है जो की फ़ोन लेके खड़ा हुआ है।

तथा दी सामने की ओर शटर हैं जो की नीले रंग का है उसके बगल दीवार है।

और एक व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है जोकि सिक्योरिटी गार्ड हैं।

भवन सामने सुन्दर-सुन्दर सफ़ेद-सफ़ेद और हरे दिखाई दे रहे है।

व्यक्ति के पीछे भी एक व्यक्ति है जो की अंदर की साइड है अंदर एक मेहल जैसे सजा रखा काफी लाइटे भी दिख रही है।